ये देखिये ईशु मसीहा जी के भवन के बाहर जो है कोई प्रोग्राम चल रहा है यहां पर कितनी सारी भीड़ इक्कठी हो रखी है।

वाओ कितनी सुंदर डेकोरेशन की हुई है और ब्लू और वाइट कलर से डेकोरेशन हो रही है पूरा लाइटिंग इतना प्यारा इधर लग रहा है और बड़े के पास में जो वाइट और येलो कलर के जो बैलून है वो बहुत ही सुंदर लग रहे है।